जो नहा रहे है अपना इंजॉय कर रहे हैं अच्छे से--

सा ऐसा जैसे फैन मट्ठी बिस्कुट --

इस मंदिर में जोत जलाने से मन की बाते पूरी हो जाती है।

और शीशे भी लगे हैं बड़े बड़े--

इसमें बहुत सारे लोग इफ्ट्टे हो रहे हैं।

कोटी सिस्टम है। यहां पर सभी प्रकार सामान मिलता है और यह--

इसलिए बुंडू पीटने वाली है अभी अभी भी हंस रही है मुझे देखके बोल रही है ए हें।

अमर बेल है यह एक गमले में लगी हुई है।

बहुत बड़े बड़े नारियल के पेड़ है जिनके ऊपर बहुत सारे नारियल लगे हैं।

एक थर्मस भी दिखाई दे रहा है।

पता नहीं कौन है इसके पीछे नंबर लिखा हुआ है।

और अभी ये इतने गंदे दिख रहे है दांत भी दिखा रहे है।

के समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या नही करे?

पता नहीं है अभी ये पिटने वाली है मेरे से।

आज केवी दिखा रही है धपड़ मार दो इसको दो जोर जोर से

पीटने वाली है मेरे से--